यहाँ पर हरी दुर्वा भी दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़े भी दिखाई दे रहें हैं और सामने बहोत बड़ा खंबा दिखाई दे रहा है जिसमें--

उसके सामने हरी दुर्वा भी दिखाई दे रही उसके सामने बहोत टाइल्स भी लगा हु--

पानी सा भरा हुआ दिखाई दे रहा है पेड़े में बहोत पत्तियां दिखाई दे रही है।

बहोत अच्छा लग रहा है चारों तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा है सामने से बहोत बड़ा रोड़ निकला है रोड़ पर वाहन आते-जाते नज़र आ रहें हैं।

कुछ आदमी नहाते हुए दिखाई दे रहे है जो बहुत ही धूम धाम से नहाते हुए दिखाई देते हैं।

यहाँ पर बहोत ही बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है एहाँ बहोत बड़ा मैदान दिखाई देरा--